चित्र में एक हेयर सैलून का अंदरूनी दृश्य दिखाया गया है।

इनमें से दो गेट का पूरा फोटो आ रहा है और एक गेट का हल्का फोटो आ रहा--

यह मंदिर रोशनी से भरा हुआ प्रतीत हो रहा है।

फोटो में एक अच्छी तरह से स्टॉक किए गए किराने की दुकान का अंदरूनी दृश्य दिखाया गया है।

इस दृश्य में बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनमें से कुछ झूला झूल रहे हैं। कुछ वहां पर पंपिंग पंप खेल रहे हैं।

इसके बाहर में एक केले का पता लगा हुआ है।

यह फोटो छठ पूजा का लग रहा है।

यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फल रखे हुए हैं।

इस चित्र में सुखदेव पैलेस का प्रवेश द्वार दिखाया गया है। जो उत्सव की सजावट से सुज्जित दिखाया गया है।

भूमि की एक संकरी पट्टी पानी में उभरी हुई है। जो एक छोटे छोटे प्रायदीप का निर्माण करती है

यह एक फर्नीचर की दुकान है दुकान के बाहर कई तरह के प्लास्टिक सामान रखे हुए हैं।

दुकान के सामने एक बाइक खड़ी है।

फूलों को चारों और फूलों से खूबसूरती से सजाया गया है।

यह एक घर का चित्र है।

यह एक स्कूल का दृश्य है।

किसी स्कूल के सामने छोटे-छोटे पेड़ पौधे एवं फूल लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक टेबल रखा गया है।

यहां पर बहुत सारे गाड़ियाँ लगी हुई है।

इस दुकान के द्वार में बहुत सारे पुतले को रखा गया है।

उस बैनर में कोको कोला का साइन बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर दो काले रंग का टेबुल रखे हुए हैं।

इसके साइड में बहुत बड़े घर दिख रहे हैं

इस फोटो के बाएं तरफ में एक बोर्ड लगा हुआ अं है।

यहां पर बहुत सारे चट्टान पानी में रखे हुए और कुछ चट्टान पानी के ऊपर जमीन पर रखी हुई है।